और इस स्टेन पर एक बस खड़ी हैं।

यह बिल्डिंग दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा हैं।

बहोत से समान रखे गए हैं।

सामने कुछ लड़के लड़कियां और एक स्टेचू --

इसबे पुनारे बिल्डिंग पर एक लाइन के खम्भे सामने बड़े-छोटे पेड़--

इस शिव के मंदिर पर--

जैसे फूलगोभी भिंडी मुर्चा टमाटर बैंगन --

कुछ बूफर ए.सी दिखाई दे रहे हैं।